यह आसमान दिख रहा है बादल दिख रहा है और काफ़ी सारे जो है पेड़ पीढ़े दिख रहे है और बहुत बड़ा गौर्मेट दिख रहा है काफ़ी बड़ा समुंदर दिख रहा है|

उनके रंग काले है इसमें मुझे दिखाई दे रहा है की कुछ गाड़िया दिखाइए दे रही है|